नदी के बीच में पानी के बीच में भी घांस है पेड़- पौधे छोटे-छोटे घांस सब है।

एक ब्लू कलर का कुछ चटाइयां बिछायी गयी जिसमें दो पंखे लगे हुआ है और यहाँ पे कूलर लगा हुआ है जहाँ पर तीन लाइट भी लाग हुआ है कुर्सी रखा हुआ है यहाँ पे बगल से कुर्सी सब रखा हुआ है।

ऊपर रेड कलर का हर कुछ भगवान जी का कुछ लगा हुआ है और बहुत अच्छा है।

बाहर डस्टबिन है बगल में पानी--